कैबिन है और वो सफ़ेद कलर की है ऊपर में एक घर है जिसकी बालकोनी --

मुझे एक चित्र दिख रही है जिसमें एक बहुत बड़ी गेट है वो सफ़ेद रंग की है उसमे मुग़ल --

सामने दो लकड़ी के टेबल रखी हुई है छोटी और लोहे की चैन गेट बनी हुई है।

तीन आदमी वहाँ हैं एक सोए हुए हैं और हाथ उनकी ऊपर की तरफ है।

मुझे एक चित्र दिख रही है जिसमें ऊपर की दिवाल --

जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है।

मुझे एक चित्र दिख रही है। सामने एक अलवेसटर की घर है और एक फ़ोटो चपकी हुई है दिवाल में।

मुझे एक चित्र दिख रही है मानो ऐसा लग रहा है कि ये एक बर्फीली जगह है और बहोत सारे बर्फ जमे हुए है।

लाल रंग की है और उसमें स्नैक बार लिखा हुआ है।

सामने दो आदमी हैं। एक ने मास्क पहन रखा है और काले रंग की जैकिट एक फोन में बात कर --